यहाँ पे शाम को बर्थडे का पार्टी होना है इसलिए आज यहाँ डेकोरेशन काफी अच्छे तरीके से किया गया है।

रेस्टोरेंट तक़रीबन हर जगह देखने को मिलता है और लोग यहाँ --

खतम हो जाता है और करना जरूरत होता है।